यहां पे अंडर गारमेंट्स रखा हुआ है इन सभी शॉप में--

यह घर लाइट ब्लू कलर से पें--

यहाँ पर एक जिम है और जिम में बहोत सारी मशीने लगी हुई है जगह--

लाइट लगी हुई है नीचे आस पास मे कुछ पौधे लगे हुए--

यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर ये शॉप बंद है और इन सभी के सटर बंद है जो रेड कल --

आस पास में और भी बहोत सारे चेयर रखी--

यहां जिनपर लाइट लगाई गई है पूरा--

घर के दोनों तरफ दो लैंप रखे है जो सफेद कलर की लाइट लगी हुई--

यहाँ पर एक शॉप है जो गेरेज की शॉप है जो गेरेज का सारा सामान रखा है टूल्स रखे --

उस साइड में और भी बेशिंग्स और टॉयलेट --

यहां पर एक ऑफिस है जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर रखे हैं बहुत सारी चेयर लगी हुई हैं।

एक व्यक्ति कंप्यूटर पर बैठ कर के काम कर रहे है जिनके सामने तिरंगा--

सामने की तरफ बहोत सारे बैनर लटके हुए दिख--

उन्हें की तरफ ओवर वाइब का एक बैनर लग --